और शॉप के साथ जो है और भी डस्टबिन की शॉप्स हैं काफी दो तीन शॉप्स इसके पास है लेकिन रोड पे इस टाइम कोई नहीं है।

कॉफी कॉफी शॉप है जिसके ऊपर एक लड़का जो है कप्स के अन्दर कॉफी बना रहा है और एक कप के अन्दर वो कॉफी बना रहा।

के अन्दर वो कॉफी बना के बिल्कुल सामने वाले को वो दिखा रहा है उसके हाथ में जो है एक आइसक्रीम भी पकड़ी हुई है।

और सामने गार्डन भी है बहुत बड़ी पार्क भी है तीन चार लोग हैं बेघर हैं मौजूद है जो कि सैर कर रहे हैं।

हर चीज अवेलेबल है पैकेट्स में बंद है बड़े-बड़े शॉपिंग में पड़ी है दो आदमी उसको सेल कर रहे है उनके पीछे चॉकलेट्स भी पड़ी है एक साइड पर पेप्सी की फ्रिज भी पड़ी हुई।

बुक्स की यह दुकान है बहुत बड़ी दुकान है जिधर से नोटबुक्स किलो में भी मिलती है नोटबुक सौ रुपये किलो ।

रजिस्टर एक सौ बीस रुपए किलोग्राम किलो के हिसाब से यहां से पेजेस मिलते हैं अलग पेजेस भी मिलते हैं रजिस्टर भी मिलते हैं और कितने ज्यादा लोग यहां से कर रहे है।

की शॉप है और जिसके अंदर जो है एक आदमी खड़ा है और बेकिंग का सामान यहां से केक वगैरा और सारी चीजे जो है वो यहां से मिलती है ।

एक दुकान है दुकान जिसको काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है येल्लो और ऑरेंज कलर के फूलों के साथ उसको डेकोर किया गया है ।

इन ए मॉस है जिसके अन्दर जो है काफी अच्छी इसकी इंट्रेंस के बाहर एक आदमी खड़ा है।

होटल का बेडरूम है बेडरूम के अंदर जो है काफी अच्छी चीजे एक एलसीडी लगी हुई है एक बेड पड़ा हुआ है सामने चेयर्स है स्टडी ।

बाइक्स की दुकान है बो क बाइक्स बाइक्स रिपेयरिंग की दुकान है जिधर जो है बाइक्स काफी ज्यादा खड़ी हुई है लोग उसको ।

रोड रोड जो है चल रहा है और बर्फ पड़ी हुई है बर्फ जो है वो जमीन पे पड़ी हुई है और जो बिल्डिंग्स है वो भी वाइट हुई हुई है ।

कुर्सियां पड़ी हैं और एक सोफे के ऊपर दो औरतें बैठी हैं और एक कुर्सी के ऊपर एक औरत बैठी है एक मर्द बैठा है।

मंदिर के समंदर के पास जो है वो पुल बना हुआ है पुल जो है वो बिल्कुल ही खस्ता हालत में हुआ है पानी भी जो है दरिया का वो सूखा हुआ है।